आगे की ओर एक मशीन है जो बैठने के लिए है।

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें बहुत सारी बाईके भी दिखाई दे रही हैं।

और पीछे की तरफ बहुत सारी--

कुछ दूरी पर लाल रंग के झंडे लगाए गए हैं।